गायत्री देवी का मंदिर है। यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा है आरती लिखा हुआ है उसपे।

एक फुल्की का ठेला है। ये लोग भी अच्छा बनाते हैं। अच्छा देते हैं तभी लोग यहाँ से भी खाते हैं ये कोई बड़ा महल के नीचे ठेला लगा हुआ है।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। बाहर एक टेबल पे ये दुकान लगाया है।